यहां पे सामने में एक पोस्टर भी जिसपे एक बाइकर है जो की बाइक चला रहा है।

फोर व्हीलर स्टेयर के बीच में एस_बी_आई कार्ड का एक छोटा सा बैनर भी लगा हुआ है ।

यहां पे सामने में एक ब्लू कलर का मिनी कार भी है।

यहां पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली है और लंबे पेड़ भी दिखाई दे रहे है

एक पेड़ भी है जो कि चट्टान के ऊपर जमा हुआ है ।

इसके अगल बगल में ढेर सारा पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है।

जिनके बीच में कुछ रखा हुआ है।

टेंपू कार बाइक वगैरा भी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ खाने का सामान सर्फ साबुन कोलगेट वगैरा रखा हुआ है।

सामने में एक लंबा सा बैनर भी दिखाई दे रहा है।

यह एक कपड़ा दुकान का दृश्य है जहां पर सामने में ढेर सारा कपड़ा रखा हुआ है।

यहां पे सामने में ढेर सारा चेयर भी लगाया हुआ है।

नीचे में सफेद कलर का टाइल्स और ऊपर में सफेद कलर का सीलिंग भी की गई है।

यहां पे पिलर भी बनाया हुआ है।

यहां पे आइसक्रीम का कलर पिंक येलो सफेद है और इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरा डाले हुए हैं।

यहां पर ऐ_सी पंखा लाइट वगैरा भी लगाया हुआ है।

यहां पे सामने में लाइलाह इल्लल्लाह मोहम्मद उर रसूलुल्लाह का पोस्टर लगाया हुआ है।

यहां पे पानी भी भरा हुआ है ऊपर से एक पुलिया भी बना हुआ है जो की बहोत ही बड़ा पुल है।

यह एक हॉल का दृश्य है जहां पे सामने में ढेर सारी महिलाएं दिखाई दे रही हैं।

यहां पे चारों ओर दीप जल रहा है यहां पे केंडल लगाया गया है।

सामने में ब्लैक कलर का टी शर्ट पहनकर एक टीचर भी है।

एक खंबा भी है जिसका कलर ऑरेंज सफेद ग्रीन है।

इस कार को टो किया गया है वो भी सीकड़ के मदद से।

कार का शीशा बहुत ही गंदा है इस कार के बगल में एक टेंपो भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर सामने में एक काउंटर भी बना हुआ है जिसके ऊपर में चॉकलेट के डब्बे सैनिटाइजर फोन पे और एक कंप्यूटर भी रखा हुआ है ।

इस कार का सामने का बोनट खुला हुआ है।

यहां पे नीचे में एक कुछ हैंडल टाइप भी लगाया हुआ है ।